बहोत ही अच्छे दिख रहे हैं बहोत सारे मास्क भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक पहाड़ की है इसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है।

आस पास सफेद रंग के चबूतरें हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है एक रोड़ की है।

रोड जो मेन रोड है काफी बड़ा है रोड में गार्डन है जोकि काफी सुंदर है हरे -भरे घास लगे हुए है रोड के साइड में।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक झरने की है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये किसी मंदिर की है महल की है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये कोई शादी का हॉल है जोकि काफी बड़ा है फ्रंट बहोत अच्छा सजाया गया है मेन द्वार।

सफेद रंग की बिल्डिंग है बहुत सारे ए_सी लगे है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह बड़े से मैदान की है जोकि मुरम का मैदान है घास भी लगा हुआ हल्का -हल्का --

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक आइसक्रीम दुकान की है।

दो बड़े बड़े आइसक्रीम के फ्रिज है।

जोकि स्टेशनरी की दुकान है बहोत सारे बच्चों के टॉयज रखे हैं।

इस तसवीर में जो फोटो है यहाँ एक शाॅप की है जिसमें बच्चों के साइकिल है छोटे छोटे।